और हरे-भरे ए जंगल दिख रहे हैं पहाड़ पर पानी की लहरें दिख रही हैं समुद्र पर और पीछे ऊपर आसमान में बहोत घने बादल दिख रहे हैं।

में बहोत सारे तोते दिखाई दे रहे हैं। ये लकड़ी पर बैठे हुए हैं। इनके बाजू छोटी सी कटोरियाँ रखी हुई हैं और नीचे रंग बिरंगे खिलौने दिख रहे हैं।

पीछे जाली लगी हुई है और अ शेल्फ्स में बोहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

दुकान दिखाई दे रही है और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ नीले रंग का अंदर बहुत सारे खिलोने टेडी गेम्स सब गुब्बारे प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है।

और शैम्पू की पैकेट अंदर की तरफ कोल्ड्रिंग्स रखे हुए हैं (है) एक आदमी अंदर बैठा हुआ है।

चित्र में एक पुल दिखाई दे रहा है पानी से भरा हुआ और सीढियां दिख रही है सामने की तरफ एक आदमी काले और सफेद रंग के कपड़े पहन कर सीढ़ी पर खड़ा हुआ है।

बाहर प्लास्टिक का सामान है बाल्टियां रखी हुई है। कुर्सी और बहुत बड़े डिब्बे रखे हुए है। अंदर लाइट्स लगी हुई है।